ये एक बड़ा कॉलेज है जिसमें बहुत सारी लड़कियां एक साथ खड़ी हुई है जो बातें कर रही है और साइड में ही--

और अंदर मछुआरे बैठे हैं सामने ही एक लड़की और एक लड़का इससे मछली खरीद रहे हैं।

साथ में है पानी के लिए एक खोवा सा बनाया हुआ है ।

ये दो औरतें जा रही है सर पे टोकरियां लेके।

मोबाइल फोन दुकान में बहुत ही ज्यादा मोबाइले है।